जिसके अंदर एक आइसक्रीम से सजी हुई प्लेट नजर आ रही है और तीन चम्मच नजर आ रही है।

इसमें एक राश्ता नजर आ रहा है जो की मिट्टी का बना हुआ है और इस रास्ते के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ उगे हुए हैं।

सोफा जो कि बहुत अच्छा है और पॉलिश हुआ हुआ है इस पे गद्दा रखना बाकी है।

सीढ़ियां बना हुआ है और कुछ झाड़ियां उगी भी है जो की कांटे वाली हैं।

पास में एक गार्डन भी नजर आ रहा है जो कि काफी हरा भरा है और उसके चारों तरफ लोहे की वायरिंग हुई हुई है।

रोड नजर आ रही है रोड पर पुलिस को बेरिकेट नजर हो रहा है और रोड के उसे पर बहुत सारी हरियाली और हरे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

मंदिर नजर आ रहा है मंदिर के सामने कुछ फुलों से बनाए हुआ पतंग जैसा कुछ नजर आ रहा है मंदिर को रंग-बिरंगे कलर से रंगा गया है।

इस फोटो में एक लड़का नजर आ रहा है जोकि लोहे की ग्रिल या लकड़ी की ग्रिलों को फूले रंग फूल से सजा रहा है।

इस फोटो में एक लाल रंग की बिल्डिंग नजर आ रही है।

इस फोटो में एक क्रीम कलर की दीवारें नजर आ रही हैं और एक सफेद कलर का ऐ_सी भी उन दीवारों पर लगा हुआ है।

इस फोटो में बहोत सारी कुर्सियां नजर आ रही है जो की क्रीम कलर की है और एक मंच लगा हुआ है जहां पर भी एक काले रंग की कुर्सी नजर आ रही है।

जो कि एक दो पहाड़ों के बीच में है।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

इस फोटो पे एक नर्सरी नज़र आ रहा है जो की पीले रंग का पोस्टर है और नर्सरी के आगे ओम लिखा हुआ --

लाइनें बनाई गयी है और कुछ स्टूडेंट खड़े है जो की लाल और काले रंग की ड्रेस पहनकर खड़े है।

जिसके ऊपर नीले रंग के कांच लगाए गए है और नीचे एक लाल कलर का पोस्टर भी नजर आ रहा है।

इस फोटो के अंदर एक घर नजर आ रहा है घर का एक गेट नीले रंग का और सीढ़ियां भी नीले रंग की नजर आ रही हैं।

इस फोटो के अंदर बहुत ही प्यारी तरीके से एक रेस्टोरेंट को सजाया गया है रेस्टोरेंट में बहुत से लोग बैठे हैं।

और यह एक गार्डन का एरिया नजर आ रहा है इसमें बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ भी है।